ये हमारे जो फैन होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ हैं।

यह अत्यंत सुंदर लग रही है। भगवान हिंदुओं के एक आदर्श देवता हैं।

उन्हें छोटा किया जाता है तोड़कर और उन्हें एक आटे की रोटी बनाई जाती है।